व्हाइट व्हाइट पाइप दिखाई दे रहा है बोरी है और राड खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है घर की छत दिखाई दे रही है एक इंसान दिखाई दे रहा --

एक जाली दिखत हे पानी दिखत हे के किनारा-किनारा पत्थर दिखत हे।

गमला दिखत हे दिखत हे पत्ती दिखत हे कांटा दिखते हे पंखुड़ी वंखुड़ी दिखत हे।